नीचे में दो कीबोर्ड रखे गए हैं और बहुत सारे माउसे रखे गए हैं।

नीचे में बहोत सारे कार्टून रखें गए हैं जो की ब्राउन कलर के हैं।

पास में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है और एक ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है।

उसके बगल में ब्लैक कलर का रेट बनाया गया है नीचे बहुत सारी ग्रीन ग्रीन फसलें जमी हुई है।

सामने एक चेयर रखी गई है जो रेड और ब्राउन कलर की है।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

पास में एक महिला खड़ी है जो की साड़ी पहनी हुई है उसके बगल में एक साइकिल लगाया गया है।

सामने एक व्हाइट बोर्ड लगाया गया है उसके बगल में ए_सी और बहोत सारे व्हाइट कलर के बल्ब लगाए गए हैं।

उसके बगल में एक बड़ा सा पेड़ है जो कि ग्रीन कलर का है।

सामने चार गोल बनाया गया है जोकि पीला और लाल कलर का जोकि फुल का है।

उसके बगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ है जोकि ग्रीन कलर के है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है जिसके सामने बहुत सारी चेयर गई लगी हुई है जो की रेड और ब्लैक कलर की है।

तीन बच्चिया जोकि नीले कलर की और पिंक कलर की और यलो टी शर्ट पहनी हुई है।

आस पास बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं जोकि सभी के सभी काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

उसके पीछे एक डी_जे रखा हुआ है जोकि काले कलर का है उसके ऊपर बहुत सारी बैलून लगाई गई है।

सामने तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति जो की छड़ काट रहा है दूसरा व्यक्ति जो की वाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पहने हुए है।

पास में दो बास रखे गए हैं एक पीले कलर की रॉड रखी गई है।

एक ने रेड कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

बगल मे बहुत सारी रॉड रखी हुई है आसपास बहुत सारे बांस रखे गए हैं।